ये तो कोई बतख-वत्तख है यार अऊ ये खेत वेत मेरा पानी-वानी--

नदी-वदी का है यार अच्छा लग रहा और ये कौन से नदी वदी का है बेहतरीन लग रहा है न--

पूरा अच्छा लग रहा है उधर हरा-भरा दिख रहा है पूरा जगह है ये क्या है ऑरेंज ऑरेंज क्या है यार समझ नहीं आ रहा इधर लकड़ी भी कटा हुआ है।

कंडक्टर -वनडक्टर होगा कितना अच्छा इ दिख रहा और --

ट्रेवल वाला बस है पीछे पूरा एक जंगल यहाँ नार्मल ऐसे खेलेने खुदने के लिए फिर ऐसे टे--

अरे वाह ए तो कोई नदी वदि टाइप का रहा रहा यार यह री मे न गाड़ी वाड़ी ले जाके धोते हैं लोग अपना-अपना गाड़ी वाड़ी को सीधा उधर से भी रास्ता निकलता हैं।

फोटो वोटो खींचाने के लिए यहाँ बहुत बढ़िया जगह है और--

अच्छा भी लगा है और हम्म्म --

ये पूजा उजा करने वाले बोहोत भीड़ है दिख रहा है और अलग से दिख रहा है एकदम ज्यादा --

लग रहे छत वत कही ढलाई वलायी हो रहे फिर इसके ऊपर और छड़ वड़ उठाएंगे और और उठाने वाले कॉलम वोलम अच्छा दिख रहा --

ये तो पूरा मछली मार्केट है एकदम छोटा-छोटा सुखी मछली तलबिया ये झी झिंगरी झींगी--